हरा-भरा पेड़-पौधा दिख रहा है एक पोल दिख रहा है।

बहुत इमारत दिख रहा है इमारत का रंग सफेद और काला दिख रहा है।

दो लोग गाड़ी बना रहे हैं एक सफेद स्कूटी दिख रहा है।

बहुत तार दिख रहा है तार ऊपर से--

यह तस्वीर रेस्टोरेंट की है।

एक गाड़ी दिख रहा है गाड़ी लाल दिख रहा है।

सड़क पे कुछ नहीं है हरा पेड़ पौधा--

इस तस्वीर में हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

पोल पे तार टंगा हम देखे हैं।

दो कुर्सी दिख रहा है टेबल कुर्सी का रंग सफ़ेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में नदी दिख रहा है नदी का पानी--

गाड़ी का रंग सफेद दिख रहा है।